बस सवारी दुकान घर जमीन रोड लाइट घर रोड गाड़ी बस रोड दुकान --

पूल पानी पहार हत्ता पत्थर जंगल पेड़ पौधा खेत झाड़ी पानी तालाब पूल जंगल --

रोड पानी असमान पुल घर--